और एक है ट्रेडमिल है और लाइट और पेंट काफी अच्छा है जिम का रेड कलर है और येलो कलर है।

और उपर जो हैं काफी सारे पंखे लगे हुए है कम से कम दस है शायद--

जिसपे वो की खाली मैदान है और ये खेल का मैदान है और एक जाली वाला वॉलीबॉल खेलने वाला--

काफी सारे लोग हैं सारे लड़के हैं खड़े हुए हैं बच्चे हैं।

और काफी सारे छोटे बच्चे हैं जो कि बैठे हुए हैं डेस्क पर।

छत जो है गुलाबी कलर की है बाकी जो दीवारें जो है वो पीले कलर की है।

इसमें कि जेंट्स और लेडिज दोनों हैं और पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई है जीप खड़ी हुई है पुलिस की।

और गुबाड़े भी लगे हुए हैं और गुलाबी कलर के है सफेद कलर के गुबाड़े लगे हैं।